गार्डन में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में सोफे दिखाई दे रहे हैं।

क्लिप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ वायरिंग दिखाई दे रही है।

टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है। एक पंखा दिखाई दे रहा है।